उर भाईओ मार्केट है मार्केट में दबा सा पड़िया है यो कोई मास काटने लाग रहिया है।

उनने एक टेम्पोडॉ खड़ो है आदमी कुछ घालन लाग रा है एक लंबो पेड़ है --